इस दिशा मे देखने मे लग रहा है दो दोकान है लेकिन दोकान बंद है। सब मे सटर गिरावल जो है।

एक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर लोहे के चारों पट्टी से घेरल हु है।

एक बीच मे बिजली के खंभे भी हैं।

बनावल हेय कोय चीज के।

सामने देखने से लग रहा है बड़ा-सा दुकान है कोई चीज का और आसमानी कलर के है।